आपके रेलवे स्टेशन अभी सुना-सुना है कुछ लोग दूर में--

घर है जो वो लगभग तीन छत का बनाया गया है इसमें बढ़िया खिड़की लगे हुए हैं एक बड़ा सा --

था उस टाइम बहुत सारे लोग दर्शन करने आए हैं स्टेज पर एक लड़की दिखाई दे रही है जो शायद फोटो खींचा रही होगी जो मस्त है।

यहाँ बहुत सारे बच्चे--

छेला के पास खड़ा हुआ है।

कोई गैरेज या छोटा कारखाना दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ बहुत खूबसूरत एक बड़ा-सा झरना दिखाई दे रहा है शाम का समय है।

सर और कुछ लोग खड़े होकर के तस्वीर --

चर्च बढ़िया दिखाई दे रहे हैं।

जिसका भी साफ सफाई या फिर रंगाई पौताई कुछ हुआ नहीं है।

बहुत पानी भरा हुआ है दूर में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के आगे पानी कीचड़ भरा है कुर्सी रखे हुए हैं।

मूर्ति बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है कलात्मक मूर्ति हैं।

यहां पर लोग आते हैं और अपना काम कराते हैं।

अभी गैराज में कोई काम चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है बाकी कुछ मशीन और दीवार में गाड़ी का पोस्टर लगा हुआ है बैठने के लिए एक छोटा स्टूल है ।